यहां पर मुझे बहुत सारी लाइट्स भी दिख रही--

यहां पर मुझे बहुत सारे स्नेक्स भी दिख रहे--

यहां पर मुझे बहोत सारी लाइटिंग्स भी दिख रही है।

यहां पर मुझे एक बहोत बड़ा मिरर भी दिख--

दिख रहे हैं जो कि यहां पे खिड़कियों पर लगे हुए हैं यहां पर मुझे बहोत सारे बॉल भी दिख रहे हैं।

पर मुझे बहोत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी दिख रही है यहां पर मुझे बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

जहां पर मुझे बहोत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी दिख रही है।

पर मुझे बोहोत सारे बड़े बड़े पोस्टर --

पर मुझे एक बहोत बड़ा हॉल दिख रहा है।

पर मुझे बहोत सारी गाड़ियां इधर उधर चलती हुई नजर आ रही है।

पर मुझे बहुत सारे छोटे छोटे घर भी दिख रहे--

ऊपर मुझे बहुत सारे बाइक्स भी दिख रहे हैं।